और बहोत सारा लोग यहां पर आये हुए हैं जूता चप्पल लेने के लिए और लोग खरीद रहे हैं।

शाम का टाइम हो चुका है सूरज ढल चुकी है और यहाँ पर कुछ नदी वगैरह है।

पीछे में एक भूरा कलर का और रेड कलर का घर है और एक पेड़ दिख रहा है हरा-भरा।